और दो कार खड़ी हुई हैं। एक कार --

अप्पर जिला अधिकारी भू राजस्व जनपथ गाजीपुर --

और नीचे पड़े हुए हैं।

और सब टोपी लगाए हुए हैं। बलून दिख रहे हैं अलग-अलग रंग के। काफी सुंदर लग रहा है।

ये कोई स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है। लोग छो बच्चे कागज का कुछ बना रहे हैं।

जहाँ पर लोग बैठते हैं। आस पास पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

और खंबे लगे हुए है। पेड़ लगे हुए हैं।